इस पिक्चर में हमें एक सैलून नजर आ रा है।

रेड लाइट में रेड बुल लिखा हुआ--

इस पिक्चर में हमें एक चर्च नजर आ रहा है।

यहां पर येलो कलर के फ्लावर --

गंगारामपुर म्युनिसिपालिटी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक कार की ऊपर डेकोरेशन की गई दिखाई दे रही है।

इस पार्क में हमें झूले लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे लोग--

इस पिक्चर में हमें एक केक नजर आ रहा है।

दिखने में ये केक बहुत ही सुंदर और डिलीशियस लग रा हैं।

इस पिक्चर मे हमें एक ऑटो नजर आ रहा है।

बहोत दूर से हमें कुछ लोग खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहां पर हमें दो बच्चे --

इसकी लाइट्स इन्होंने ब्लू कलर की येलो कलर की ऑन की--

इस पिक्चर में हमें पिक और वाइट कलर की बेलून्स नजर आ रही हैं।

यहां पर हमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

और हमें लोग खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

का कोई फंक्शन दिखाई दे रा है।